उसमें एक आदमी बैठा हुआ है जो की फूल की मालाएँ बना रहा है फूल की मालाओ में सफेद रंग का फूल लगा है लाल कलर का फूल लगा है।

एक दुकान है जो की हरे कलर का पैन्ट हुआ है उस में दो आईने रखे है सामने एक कुर्सी है जिस में एक लड़का बैठा है वो हरे कलर का कपड़ा पहना है ।

ऊपर गुब्बारे लगे है छत में जो कि संतरे कलर के और बैगनी रंग के हैं पीछे दीवार में एक फोटो लगा हुआ है।

एक मंदिर है उसके सामने एक मंडप बना हुवा है जिस मे चारों तरफ से लाइट लगी है और कुछ झालर लगे है जो के पीले कलर के जल रहे है।

जो की छत को बना रहे है अगल बगल और कुछ घरे है जो की काफी ऊंचे ऊंचे है ।

उसके सामने दो मंज़िला एक मकान है जिसमे नीचे बैंक खुला हुआ है जिस के ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड लगा है।

एक मंदिर जो की काफी ऊंची है | अगल - बगल कुछ पेड़ है जो की केले के है मंदिर की चारों तरफ फूल की मालाएं लगी है।

एक दुकान है जो की मछली की दुकान है और उसमे दो प्रकार की मछलियाँ है कुछ काले कलर की है और कुछ सफेद कलर की है उनके बगल मे कुछ खुर्सी लगी है जिस में एक आदमी बैठा है ।

एक साइड लड़की और आदमी बैठे है। सामने एक आदमी खड़ा है जो की शर्ट पेंट पहना है।

कुछ लोग लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं कुछ ऐसे ही जमीन में निचे बैठे हैं | कुछ औरते हैं पीछे जो की सभी सभी फूल बेच रहे हैं ।